युवक के हाथ में एक बड़ा सा डंडा दिखाई दे रहा है।

बहुत सारी ईटे रखे हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पर बहुत सारे बड़े छोटे कंपार्टमेंट बने हुए हैं।

बहुत सारे रैकेट्स के दिख रहे--

गार्डन पर हल्की हल्की घासें उगी हुई हैं।

यह एक फूलों का बागान है।

कुछ महिलाएं चारों तरफ फैली नजर आ रही है।

यहां पर बहुत सारे वृक्ष हम देख सकते हैं।

यहा पर एक शादी का मंडप दिख रहा है।

यहां पर बहुत सारी लकड़ी कटी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर धूल उड़ता हुआ दिख रहा है।

यो एक सी पोर्ट का दृश्य दिख रहा है।

पर बहोत ही सुंदर लाइट्स का प्रयोग किया गया है।

यहां पर बहोत सारे रैक बने हुए दिख रहे हैं।

एक रेफ्रिजरेटर दिखाई दे रहा है।

यहां पर लाइट्स बल्ब लगी हुई है।

बगल में कुछ न्यूज़ पेपर लगे हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पर एक बड़ी सी बाल्टी दिखाई दे रही है।

एक महिला खड़ी नजर आ रही है।

यहां पर कुछ लोग चलते हुए दिख रहें हैं।

बहुत ही अनोखी और सुंदर डिजाइन दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहुत सारे बच्चे लैपटॉप यूज करते हुए नजर आ रहे हैं।

सरफेस पर बहुत ही साफ सफाई दिख रही है।

बड़े से काले रंग के बोर्ड पर रांची डेंटल एंड हेल्थ केयर लिखा हुआ नजर आ रहा है।

पीछे बड़ा बड़ा बिल्डिंग का दृश्य दिखाई दे रहा है एक लोहे का ब्रिज जैसा कुछ नजर आ रहा है।

एक बड़े से पोस्टर के ऊपर शालीमार नर्सरी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे स्टैंड के ऊपर सजाए हुए पौधे नजर आ रहे हैं।

अंदर एक बड़ी सी लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है कुछ चेयर नजर आ रहे हैं।

एक टेबल जिसपे वाइट रंग की चादर बिछी नजर आ रही है।

जो एक फॉल का दृश्य है।

बड़े से बोर्ड पर न्यू अनूप साइकिल लिखा हुआ दिख रहा है।